दुकान का रंग लाल है एवं उस पे पीली रंग का बैनर भी छपा हुआ है।

प्रस्तुत दुकान में एक बड़ा सा कमरा दिखाया गया है।

अधिकांश बल्ब से सफेद रंग की रोशनी निकल रही है।

बहोत सारे लोग लकड़ी के कुर्सी पर बैठे हुए हैं।

आस पास का वातावरण बहोत शांत है।

मंच पर एक व्यक्ति भी खड़ा है एवं मंच के कुछ दूरी पर बहुत सारे कुर्सियां भी लगी हुई है।

नदी का पानी बहोत ही शांत और हरा है।

दुकान के अंदर बहोत सारी मोटर की समाने दिख रही है।

प्रस्तुत छवि में एक व्यक्ति जमीन पर बैस कर वाशिंग मशीन को बना रहा है।

ट्रक का रंग और आकार सभी एक जैसा है।

दुकान है बहुत सारे खाद्य पदार्थ और जनरल स्टोर के समान है।

दुकान पर एक व्यक्ति लाल कलर का शर्ट पहन कर खड़ा है उसने सफ़ेद रंग की जूते भी पहने हुई है।

फोन पे का विज्ञापन भी दिख रहा है।

स्टेज को नीले रंग के पर्दों से बनाया गया है।

प्रस्तुत छवि में एक बहुत बड़ा इमारत दिखाया गया है।

इमारत का रंग सफेद और लाल रंग से रंगा गया है।